द माउंटेन इज आल्सो लुकिंग देयर एंड द रिवर इज आल्सो देयर --

ईस ईमैज मैं हमारे देश का तिरंगा झंडा दिख रहा है जो की हवा से लहेला रहा है अब--